यहां पे इनके हाथ में एक मशीन है जिसे तार काटते हुए नजर आ रहा है।

यहां पे गुलाबी कलर के कपड़ा बिछाया गया है दीवार की कलर ब्लू है।

पीछे की और टाइल्स भी लगा हुआ है।

यहां एक बक्सा का फोटो बना हुआ है।

इसका कलर रेड है ऊपर की ओर शीशा के मदद से लगाए गए हैं।

पीछे की ओर हरे भरे पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा है।

जहां पे काफी सारे आदमी नजर आ रहे हैं।

यहां पे बड़ा बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है।

नीचे की ओर एक गाड़ी नजर आ रही है जिसकी कलर व्हाइट है।

यह एक रूम का फोटो बना हुआ है जहां पे बड़ा सा लकड़ी का टेबल बना हुआ है जिसकी कलर ग्रे हैं।

टेबल के ऊपर प्रिंटर मशीन रखा हुआ है और लैपटॉप भी रखा हुआ है।

इसमें लिखा हुआ है अमन सिंगार एवं जनरल स्टोर ।

यह एक मार्केट का फोटो बना हुआ है।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

बाहर की ओर काफी सारे सामान भी टंगा हुआ है।

यहां पे लोहे की मदद से करकट की मदद से बनाए गए हैं।

इसमें लिखा हुआ बाबा जनरल स्टोर ।

इसमें काफी सारे बुक रखे हुए हैं।

नीचे की ओर एक आदमी दिखाई दे रहा है।

पीछे की ओर एक बड़ासा बिल्डिंग नजर आ रहा है।

इसमें लिखा हुआ है दुल्हन कलेक्शन ।

साइड में हरे भरे पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा है पीछे की ओर कुछ सामान रखे हुए--

यह एक बिल्डिंग का फोटो बना हुआ है जहां पे लोहे के ऊपर की ओर रेलिंग लगी हुई है।

ऊपर की ओर दो पोस्टर भी लगा हुआ है नीचे की ओर एक कार नजर आ रहा है।

की कलर व्हाइट एवं पिंक है पीछे की ओर एक बड़ा सा पेड़ हरा भरा नजर आ रहा है।

यह नजर आ रहा है पीछे की और पक्की की गई है।

यहां पे ऐड भी नजर आ रहा है।